यहाँ पर सोफा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर बेड भी दिखाई दे रहा है पंखा भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ--